ये एक मछली बाजार है। यहाँ बहुत ही बड़े-बड़े मछली रखते हैं और और हमको मछली खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही बड़ा-बड़ा मछली यहाँ पे है और तालब का मछली बहुत ही अच्छा लगता है खाने मे बहुत लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं और मछली खाना चाहिए।

जैसे की पहले कोई गाड़ी इधर से नही जाता था अब पुल बना देने के कारण बहुत सारे गाड़ी पार होते हैं।